पेड़ के साइड में एक घर दिखाई दे रहे है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है इ नजारा बहुत ही अच्छी दिख रही है।

यहाँ पे आपको किताबें बोटल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई है यहाँ पे पांच कुर्सी पड़ी हुई है कुर्सी के साइड में एक बोर्ड है बोर्ड में आपको जो प्रिंट दिखाई दे रहा है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

यहाँ पे एक कार खड़ा हुआ आप देख पा रहे है यहाँ पे एक दुकान भी है यहाँ पे एक लेफ्ट साइड एक मंदिर भी है।

यहाँ पे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के साइड में आपको स्कूटी खड़ा हुआ देख पा रहे हैं।

स्कूटी के साइड में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक सटर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक शेर दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा।